इस फोटो को देख कर ये प्रतीत होता है की यह एक गोल्फ स्टेडियम है यहाँ पर काफी लोग खड़े हुए है।

क्चर में जो हम देखकर है वो एक साइकिल का स्टोर है जिसमें रेसिंग साइकिल भी है और डोमेस्टिकल साइकिल भी है।

आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं।